टेबलों पर कुछ दस्तावेज भी रखे हुए हैं और दीवार पर कुछ बोर्ड गड़े हुई है और बहोत सारे लाइटें लगी हुई दिखाई दे रही है।

वहाँ पर कुछ व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं जो की सब्जियों के पास में बैठे हुए हैं और एक रोड भी निकला हुआ दिखाई दे रहा है और वहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं और क्रिरेटे रखी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पर हमें पुराना खंडर बना हुआ दिखाई दे रहा है उस खंडे पर बहोत सारी तस्वीरें लगी हुई दिखाई दे रही है जो कि दो-दो तस्वीरे बनी हुई है।

यहाँ पर हमें एक कमरा दिखाई दे रहा है जो कि इमारत बनी हुई है और खिड़कियाँ दिखाई दे रही है खिड़कियों में पर्दे लगे है जो कि लाल कलर की नज़र आ रहे है और--